सामने एक बिल्डिंग --

लगे हुए है। यहाँ बहोत सारे लोग चाय पानी पीने आते है।

यह एक मंदिर है जिसके साइड साइड अच्छी बनावट और सजावट --

यह एक होटल है। जिसका नाम होटेल ला है।

यह सजा हुआ है। इस बिल्डिंग की काफी अच्छी बनावट है। सीढियां में ग्रेनाइट लगा हु --

यह एक मैरेज गार्डेड है।

यह एक डॉक्टर की क्लिनिक है।